कुछ लोग झुक के नदी में कुछ कर रहे हैं ।

साइड में एक तिरंगा रखा हुआ है। यहाँ कुछ फूलो की माला रखी हुई है।

गोल्ड कलर का एक रेड कलर का भी है बैठने का खिलौने का --

साइड में एक पेड़ भी दिख रहा है बिल्डिंग भी दिख रही है नाईट का समय है।

यहाँ एक पलेटफॉम दिख रहा है पलेटफॉम में वाइट कलर के दरवाजे दिख रहे है ऊपर टिन सेड --

जो गिरिल लगी हुई है। उस को फूलो से सजाया गया है। सामने फोर वीलर खड़ी हुई है।

बहोत आगे खम्भा दिख रहा है वाइट कलर का।

एक सहकोटि भी टंगी हुई है।

कुछ सामान रखा हुआ दिख रहा है।

यहाँ बहुत सुंदर-सुंदर अलग-अलग मुर्तिया बनी हुई है कुछ कृष्ण जी की है और क कुछ हनुमान जी की है।

ऊपर बहुत सारा सामान रखा है। ऊपर पंखा भी लग हुआ है।